नीचे ये जाली की रेलिंग लगी है।

और एक गेट लाइट स्काई कलर की--

और वे सीलिंग पे लाइट लगे हुए हैं और लाइट जल रही है।

सिलिंग वाइट है वहां पे फैने लगी हूंई--

बेसिन नजर आ रहे हैं जिसपे नल लगे हुए है वह स्टील की है।

तीन चार रोटियां रखी हुई है।

टेबल पे पानी कि बोतल रखी हुई है एसी नजर आ रहे हैं।

हल्के हल्के से घांस है।

रस्सी दिखाई दे रहे हैं।

बाहर एक तिरंगा फहराया हुआ है।

गेट दिखाई दे रहे है विंडो नजर आ रही है जिसपे लकड़ी की गेट लगी हुई है।

दृश्य में एक स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है।

रेड व्हाइट ग्रीन बैलून लगाई हुई है।